और इधर शीशा का कबाड़ी है और टेबल पर मोबाईल भी रखा हुआ है अंगूठा लगाने वाला--

पर्दा भी लगाया गया है सीढ़ी भी है।

काउंटर पर एक आदमीन कंप्यूटर चला रहा है कुर्सी पे बैठ करके.

होटल है जो की समान रखा हुआ है और सिटा से कुछ छाया हुआ है।

और ऊपर में एक पंखा है और कुछ कूट में भी रखा गया है समा--

रखने वाला पर रोज साइड भी है लेकिन मोटरसाइकिल का है.

बहुत ही बड़ा मकान है जोकि दो है.

देख रहे हैं ये सूतने वाला बनाया गया है जो कि ऊपर से प्लाई डाल दिया गया है।

देख सकते हैं है पलटिना है उधर भी एक गाड़ी है जो की तीन गाड़ियां हैं.

आ दरवाजा के ऊपर ईटा से उठा दिया गया है उसका मोटरसाइकिल है.

दुकान है जो कि यहां दिख रहा है अल्ता है ऊपर में भी अल्ता है उस --

और तीन रखी है कोलर जोकि सपोर्टर है और--

और ऊपर में कुछ चित्र है जो की बोर्ड का काम आता है ओ ओ ऊपर में लगा दिया गया--

उधर दो आदमी जा रहा है एक औरत आ रहा है।

और दो बड़े लाइट है जो कि फॉक्स मार रहे है.

अर एक आदमी लूंगी पहना हुआ है ।